और एक कमरा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक स्कूल दिखाई दे रहा है अ- सनशाइन स्कूल सी_बी_एस_सी बाहर लिखा हुआ है।

इस तस्वीर मे आसमान दिखाई दे रहा है और एक रेलवे प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है पीला बोर्ड दिखाई दे रहा है।

सफ़ेद है काली है सुरमयी है और पीछे की तरफ कुछ लोग दिखाई दे रहे है और पेड़ दिखाई दे रहे है और कुछ मकानात दिखाई दे रहे है।

सफ़ेद रंग की दीवार दिखाई दे रही है पीछे की तरफ एक तंबू दिखाई दे रहा है और एक ईमारत दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है और ईसाईयोंका दिखाई दे--

इस तस्वीर मे एक द्वार बना हुआ दिखाई दे रहा है कपड़े का जिसमे बहुत सारे रंग बे रंगी फूल लटके हुए है दो आदमी बाहर की तरफ खड़े हुए है।